भगवान की मूर्ति बांसुरी लिए हुए है और इसे बहुत ही अच्छे से फूलो से सजाया गया है।

तस्वीर में एक ड्रेस पर बोहोत से छोटे बड़े प्लेट्स रखे हुए है सभी प्लेट्स एंड प्याला जो अच्छे है।

और इस दरिया मे एक बड़ी-सी नाव भी है जिसमे बोहोत से लोग है जो शायद सफर कर रहा है और पीछे तरफ भी है।

एभी बोहोत बड़े मैदान की तस्वीर है जहाँ पर एक साइकिल खड़ी है।

जहां पर बहुत सी पटरियां नजर आ रही है।

ए किसी तकरीफ की तस्वीर है जहां पर बोहोत से बच्चे डांस कर रहे है।